ब्लू कलर में बनी हुई है और नीचे कार पार्क की गई है और साइड में बहुत सारे कार पार्क की है यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगो की भीड़ भाड नज़र आ रही है और साइड में बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी नज़र आ रही है और वो बहुत ज्यादा बड़ी है तो ऊपर धूप पड़ने की वजह से बहुत ही ज़्यादा चमक रही है पीछे बड़े बड़े पोस्टर भी लगे हुए है।

स्कूल है स्कूल के बाहर का जगह है यहाँ पर बहुत सारे कचरा पड़े हुए नीचे की तरफ ऊपर का जो स्कूल है बहुत ही सुंदर है और बहुत हाईलाइट है यहाँ पे दीवार में खिड़कियां लगी हुई है एक कॉरिडोर है जो ब्लैक कलर --

अंदर चीज हैं जो को रखी हुई हैं काले कलर की हैं और उसके आंखे बंद हैं और उसके जो कॉस्टयूम पहनाए गए हैं येलो कलर के पहनाए गए हैं इसके लाइट पड़ने के वजह से--

एरिया है बहुत सारे कुर्सी और टेबल दिख रहीं है दीवार पे एक बड़े से पोस्टर लगा हैं एक लड़का हैं वो हस्स रहे हैं और सामने एक तस्वीर हैं वह पर एक लड़का ने सन ग्लासेज पहन हुए हैं।

यहाँ पे कुछ कार भी नजर आ रहे हैं जो की व्हाइट स्टील और थोड़े से ब्लैक कलर के है और यहाँ पे धूप पड़ने की वजह से बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे है थोड़े दूर में एक रिक्शा नजर आ रही हैं जो की येल्लो और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है उसके नीचे एक आदमी खड़ा हुआ है और यहाँ पर थोड़े बैनर भी लगे हुए हैं।

ऊपर झाडियाँ नज़र आ रही है जोकि पुरे पिंक कलर की है यहाँ प लाइट के कनेक्शंस गए है तो उसके लिए तार जो है जो ब्लैक कलर की नज़र आ रही है और ये बहुत मोटे तार नज़र आ रहे है देखने में --

समारोह चल रहा है यहा पे बहुत लोगो की भीड़ हैं सामने बाती बरी हैं एक दिपाल और पॉलीथिन से बनाई हुई हैं।

यहाँ पर झाड़ियाँ नजर आ रही है सामने एक घर नज़र आ रहा है घर के पास एक सीढ़ी है और ऊपर एक सिक्योरिटी गेट का कलर पुरा ब्लैक है इस बच्चे ने ब्लैक कलर की चप्पल पहने हुए है और इन्होंने कपड़े भी पहने हुए हैं शॉर्ट्स पहनें हुए हैं।

पुराने ब्रिज लग रही है जिसके साइड का हिस्सा जो है थोरी सी खराब हो गई है नीचे का हिस्सा बहुत ज्यादा किनारे हो गई जो कि छोटे छोटे है एक ही साइज की--

नज़र आ रहा है वहां पर स्टेच्यू नज़र आ रहा है पीछे घर नज़र आ रहा है और घर के बाहर कोरिडोर नज़र आ रहा है जो व्हाइट कलर का नज़र आ रहा है और यहाँ पर बहुत सारे एसी नज़र आ रहा है एसी जो व्हाइट कलर की नज़र आ रहा है नीचे सीढिया नज़र आ रही है जो--

कचरे भी नजर आ रहे है यहाँ पे थोड़े बस्ते नजर आ रहे हैजो कि रखे हुए हैं बस्तो का जो कलर है वो थोड़े अलग- अलग नजर आ रहे है यहाँ पे बहुत सारे पॉलिथीन और प्लास्टिक टंकी भी हैं वो भी नजर आ रही हैं।